आपका फिर से स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के पहले भाग में मैंने आपको बताया कि यहाँ इस फॉर्म का उपयोग करके अपनी अपलोडेड फाइल की विशेष प्रोपर्टिज को कैसे लें
अब मैं आपको बताऊँगा कि इस फाइल को अपलोड कैसे करें और यहाँ अपलोडेड फोल्डर में इसे कैसे स्थानांतरित करें जोकि अभी खाली है
यदि आपको याद है हम एक अस्थायी जगह का जिक्र कर रहे हैं जो कि हमारे वेब सर्वर पर संग्रहीत की जा रही है
इसका अभी अधिक उपयोग नहीं है
हमारे पास यहाँ हमारी सभी प्रोपर्टिज हैं अतः मैं लिखूँगा प्रॉपर्टीज ओएफ थे अपलोडेड फाइल तो हम जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं
हमारे पास हमारी सभी विशेष प्रोपर्टिज यहाँ हैं
मैंने उन सबको याद रखने में सरल वेरिएबल नाम दिए हैं
तो हमें इन सबको व्यक्तिगत रूप से कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है
पहले कार्य यह हम करेंगे कि जाँचने के लिए एक इफ स्टेटमेंट बनायेंगे यदि यहाँ कोई एरर्स हों
यहाँ यदि एरर कोड शून्य से बड़ा है तो इसका मतलब है कि इसे एक एरर कोड द्वारा जारी किया गया है
फिर मैं डाइ लिखूँगा
और मैं एक एरर मेसेज दूँगा फाइल कोल्डेंट या एरर अपलोडिंग फाइल कोड एरर
यह उपयोगकर्ता को एक एरर कोड देगा
अब एल्से भाग
मैं इसको साधारण और सिंगल लाइन में रखने के लिए इन कर्ली कोष्ठकों को जोड़ूँगा
अतः एल्से मैं move uploaded file नामक फंक्शन का उपयोग करना चाहता हूँ
तो हम अस्थायी नाम टेम्प लेंगे जो इस फंक्शन का पहला पैरामीटर है और दूसरा पैरामीटर डेस्टिनैशन है जो कि अपलोडेड फोल्डर है
अतः मैं अपलोडेड और फॉरवर्ड स्लैश टाइप करूँगा
और उसके अंत में हम फाइल का नाम जोड़ेंगे जिसे हमने अपलोड कर दिया है
अतः यहाँ यह केवल नामे होगा
यह बताता है कि उपयोगकर्ता यहाँ केवल इंटर वेरिएबल्स जोड़ रहा है
अन्यथा हमें ये टाइप करने पड़तेउदाहरणस्वरूप टेम्प नामे
फिर यहाँ जाएँ और इसे इस तरह रखें
यह काफी अस्तव्यस्त और पढ़ने के लिए मुश्किल लगता है
अतः यह इन वेरिएबल्स को यहाँ रखने के लिए काफी आसान है
ठीक है तो अब मैं इसे हटा देता हूँ या इसे मैं रख देता हूँ
और आखिर में मेसेज एको करता हूँ अपलोड कंप्लीट
चलिए इसकी कोशिश करते हैं
मैं अपने पेज में लॉगिन करता हूँ और अपनी इंट्रो टो अवि फाइल उठाता हूँ
मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा और हम देखेंगे कि अपलोड पूर्ण हो गया है
चलिए मेरी फाइल जाँचते हैं
फोल्डर अपलोड करें और मेरी अपलोडेड सब डाइरेक्टरी पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि यह फाइल यहाँ है जबकि पहले इसे मेरे वेब सर्वर पर अस्थायी डाइरेक्टरी में संग्रहीत किया गया था
अतः हमने यहाँ अपनी फाइल सफलतापूर्वक अपलोड कर दी है
यहाँ कुछ और चीजें हैं जिन्हें हमें करने की जरूरत है
दूसरे इफ स्टेटमेंट को उंडो करें या इस इफ स्टेटमेंट को उंडो करें
हम विशिष्ट फाइल प्रकारों के लिए जाँच करने जा रहे हैं जिन्हें हम अपलोड नहीं करना चाहते
अतः अदाहरणस्वरूप मानिए कि मैं अवि फाइल्स अपलोड करना नहीं चाहता हूँ
मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि यदि एरर शून्य से बड़ी है तो फाइल्स अपलोड न करें
अन्यथा मैं एल्से के अंदर एक नया इफ स्टेटमेंट शुरू करूँगा
और मैं यहाँ ब्लॉक बनाऊँगा
और ये कंडीशंस फोर थे फाइल हैं
मैं लिखता हूँ यदि फाइल का प्रकार जोकि हमारा टाइप वेरिएबल है t y p ई दो इक्वल टू चिन्ह इक्वल विडियो डोट अवि
जैसा कि आपने इसके पहले भाग में देखा जैसे ही मैंने इसे एको किया यह विडियो डॉट अवि के समान था
और फिर हम कह रहे हैं कि यदि यह विडियो डॉट अवि के समान है तो फाइल को अपलोड करें
मैं इसे यहाँ नीचे लाऊँगा और मैं उसे एल्से ब्लॉक में रखूँगा
अतः अब मेरे पास है यदि विडियो अवि के समान है फिर डाइ और मेसेज है थाट फॉर्मेट इस नोट एलोव्ड
ठीक है तो मैं अब इसे अपनी अपलोडेड डाइरेक्टरी से डिलीट करूँगा और मैं अपनी पहली अपलोडेड फाइल पर वापस आऊँगा
मैं इंट्रो डॉट अवि चुनूँगा और जब मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ तो यह दिखाता है कि फॉर्मेट इस नोट एलोव्ड
और यदि मैं मेरी अपलोडेड डाइरेक्टरी पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फोल्डर खाली है
कुछ भी अपलोड नहीं किया गया है
अब अवि के बजाय चलिए लिखते हैं कि मैं इमेजेस विथ पंग एक्सटेंशन बैनप्रतिबंध करना चाहता हूँ
मैं इसे यहाँ बदलूँगा और फिर से मेरी फाइल अपलोड करूँगा
आप देख सकते हैं कि क्योंकि यह एक स्वीकृत फाइल प्रारूप है हमें मेसेज मिलता है Upload कंप्लीट और यह मेरे अपलोडेड फोल्डर में स्थानांतरित कर दिया गया है
इसे फिर से डिलीट करते हैं
मैंने इसे रद्दकैन्सल कर दिया
चलिए फिर से डिलीट करते हैं
औके तो हमने यहाँ क्या देखा कि विशिष्ट टाइप को कैसे उल्लिखित करते हैं
हम और क्या कर सकते हैं कि हम विशिष्ट फाइल साइज उल्लिखित कर सकते हैं
मैं इस ओर ऑपरेटर का उपयोग करके ओर लिखूँगा और मैं लिखूँगा ओर साइज हाफ मेगाबाइट से बड़ा है
यह हाफ मेगाबाइट है जिसमें पाँच सौ हजार बिट्स माफ कीजिए बाइट्स हैं
मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है और मैंने बाइट के बजाय बिट्स कह दिया है
अतः यह पाँच सौ हजार बाइट है जो कि 0 प्वॉइंट 4 मेगाबाइट के समान है
मैंने अभी के लिए केवल हाफ मेगाबाइट लिखूँगा
यह साइज का मूल्यांकन करेगा और बतायेगा कि यह हाफ मेगाबाइट से बड़ा है
फिर यह बताता है this फॉर्मेट इस नोट एलोव्ड
अतः मैं फॉर्मेट नोट एलोव्ड ओर फाइल साइज टू बिग को अनुकूल बनाने के लिए इस मेसेज को बदलूँगा
अतः आप इनमें से प्रत्येक के लिए एक इफ स्टेटमेंट बना सकते हैं
जो कि आपके टाइप का मूल्यांकन करने के लिए और आपके साइज का मूल्यांकन करने के लिए है
आपको इस कंडिशन को लेने की आवश्यकता है और इसे इफ अन्य स्टेटमेंट में रखें
तो मैं यहाँ वापस जाता हूँ और मैं मेरी फाइल फिर से चुनता हूँ
केवल जानने के लिए कि यह वहाँ है
अपलोड पर क्लिक करें और यह कहेगा Format नोट एलोव्ड
अब यदि आप अपने कोड पर वापस जाते हैं तो यह पंग प्रारूप में नहीं है लेकिन यह साइज सीमा को बढ़ा रहा है
चलिए इसे 2 मिलियन में बदलते हैं जो 2 मेगाबाइट्स है
रिफ्रेश करें और सेंड करें
हम देख सकते हैं कि हमारा अपलोड पूर्ण हो गया है क्योंकि यह साइज में एक ही मेगाबाइट है
यही सब मेरे पास अभी के लिए फाइल अपलोड पर है
यह सब आपको विशिष्ट फाइल टाइप्स और फाइल साइज को रखने के लिए इसका उपयोग करना जानने की आवश्यकता है
जो आपके वेबसर्वर के लिए बहुत बड़ा है
यदि आप अपने वेब सर्वर में बड़ी फाइल्स नहीं चाहते हैं तो इसे नियंत्रित करने का यह अच्छा तरीका है
जैसा कि आपने देखा यह बनाने के लिए काफी आसान है
इसका अभ्यास करें और आप इसकी उपयोगिता से काफी प्रभावित होंगे
यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया पूछने में संकोच न करें
और कृपया सब्स्क्राइब करें यदि आप किसी भी अपडेटेड विडियो या नये विडियो पर अधिसूचना देना चाहते हैं
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित हैआईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद